घरों में यूज़ लेने वाले साबुन सरफ़ और सभी प्रकार के समान यहां पर मिलते हैं।

बाइक स्कूटी सभी प्रकार के आते हैं यहां पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग आते हैं खूब सारी भीड़ लगी हुई --

और पेट्रोल पंप के पास में एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की बिल्डिंग है बिल्डिंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

और यहां पर सड़क भी बहोत ही क्लीन दिखाई दे रहे यहां पर बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और रेडियो टी_वी सभी प्रकार के समानों की रिपेयरिंग की जाती है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और इसके ऊपर वेलकम नाम लिखा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है और यहां पर सजावट की गई है बैलून लगाए हुए बहोत ज्यादा --

और यहां पर बलूंस दो प्रकार के लगे हुए एक व्हाइट और एक गोल्डन कलर के यहां पर वेटर काम कर रहे है।

यहां पर बहुत सारी भीड़ है ऑटो वाले भी आ रहे है यहां पर लोग अपनी बाइक को निकालने के लिए --

और पास में एक और जनरल स्टोर है जो दवाइयों का या मेडिकल स्टोर मां करणी मेडिकल नाम से है।

यहां पर बहोत ही अच्छा कलेक्शन दिख रहे है और इसमें ए_सी भी लगी हुई है बलोंस लगे हुए है यहां पर सजावट के लिए --

यहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं और पास में एक एस_बी_आई बैंक का ए_टी_एम है।

लंच डिनर सभी प्रकार के नाश्ते मिलते हैं इस होटल के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।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

यहां पर लोग फेशियल करवाने के लिए आते हैं कटिंग करवाने के लिए आते हैं यह सैलून बहोत ही अच्छा है।

लोग झूला भी यहां पर झुलते हैं और पार्किंग एरिया भी है यहां पर बच्चों के लिए बहोत अच्छे अच्छे खिलौने हैं बच्चे खेल सकते हैं यहां पर।

और इसमें अलग अलग प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं पोस्टर में कुछ कुछ लिखा हुआ है दीवार पर पेंटिंग की हुई --

एक आदमी छोटे बच्चों को लेकर खड़े हुए हैं यहां पर खूब सारा पानी इकठ्ठा हो रखा है और पुल के नीचे से जाने की जगह भी है।